कुछ ट्रक खड़े हुए दिख --

चेअर है ड्रम है चेअर मे एक लड़की बैठी हुई है उसने स्वेटर पहना हुआ है एक गद्दा दिखाई दे रहा है एक हरा रंग का कार्पेट दिखाई दे रहा है।

सभी औरते काफी लंबा सिंधुर भरे हुए है अनेक कलर की साडी पहने हुए है कंगन चूची और पूरा शृंगार किए दिख --